यह किसी ऑफिस की तस्वीर है जहा मात्र तीन लोग खड़े है।

और यहाँ देखकर ये पता चलता है की यहाँ दूध के हर प्रोडक्ट अवेलेबल है और जिस कारण यहाँ बहोत से लोग खड़े है खरीदने के लिए।

जिन्होंने काफी खुबसूरत से शृंगार किया है और वाइट और रेड मिक्स साड़ी को पहना है और वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही--

यहाँ काफी साडी गाड़िया लगी है रिपेरिंग के लिए काफी लोग वह--